और पार्क में कूऊउत्तत्ता बइठा हुआ है।

और यिहाँ पर एगो रोड है रोड पर आदमी है यहाँ हैं।

यहाँ पर लगता है ट्रैन से ही माल का नाम है यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं उस ट्रैन --

और यहाँ पे एक नही दो दो बाइक लगा हुआ आदमी भी जा रहा है उधर बास लगा हुआ है ।

अच्छा लग रहा है और होगा के नही --

यहाँ पर लगता है हुआ है और लग रहा है नीचे में कुछ चीज का गोदाम है।